माँ भवानी प्रिंट्स नाम की शॉप है और इसके दुसरे तरफ एक बोंदिया इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप भी है।

और कुछ पत्थर भी डले हुए है जो की आप लोग देख सकते है और काफी दूर-दूर तक हमे कुछ नजारा नज़र नही आ रहा है।

यहाँ पर हमें सामने की तरफ काफी सारे बड़े - बड़े फ्लावर पॉट्स रखे हुए दिखाई दे रहे है।

जो की काफी बड़ा दिखाई दे रहा है ये तीन मंजिल का कार्यालय बना हुआ है जिसमे की काफी सारी खिड़किया दिखाई दे रही है।

ये अलग -अलग कलर के और अलग- अलग फैब्रिक के कपड़े है जोकि आप लोग देख सकते हैं।

एक रैक में काफी अलग-अलग साइज़ की टोपिया रखी हुई है जो की काफी सुंदर लग रही है।

छोटा सा तालाब जैसा है जहां पर काफी सुन्दर चारो तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें रखी हुई है और यहाँ बिच में काफी सारा पानी भरा हुआ है।

बॉक्स में काफी सारे केक्स रखे हुए है और ऊपर भी कुछ केक रखे हुए है।

जहां पर सामने की तरफ एक काउंटर बना हुआ है जिसपे की काफी सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

इस काउंटर पर इसका कुछ नाम भी लिखा हुआ है इसपे मे आई हैप्ल यू लिखा हुआ है और यहाँ काफी सारे लाइट्स भी लगी हुई है।

सामने की तरफ हमे चारो तरफ काफी बड़े-बड़े मंदिर बने हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर काफी सारी भीड़ भी है यहाँ बोहोत सारे लोग भी घूमते हुए नज़र आ रहे है और यहाँ मंदिर भी है।

चेलो रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। इसके बाहर हमे कुछ लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहै है।